यहा दो-तीन घरें भी दिख रही हैं और कुछ घर पीले है तो कुछ उजले कलर के --

यह तस्वीर एक मंदिर का है।

यह तस्वीर एक पार्क का है और इस पार्क में एक छोटी-सी तालाब बनी है। जिसमें तीन झरने दिखाई दे रहे हैं और झरने के पीछे बहुत सारी पेड़ हैं और यहां पानी भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ इस घर में कुछ छोटे - छोटे सामान भी दिख रहें हैं और इस घर मे एक आदमी भी दिख रहा है।

नदी के इस पार भी कुछ जमीन दिख रहे हैं जिस पे हरे-हरे घास उगे हुए हैं और यह जल काफी शुद्ध है।

इस तस्वीर मे एक बड़ा-सा गार्डन दिख रहा है और उस गार्डन के पीछे एक घर दिख रहा है जो कि अभी बना रहा है।

घर के बगल मे काफी पेड़ भी दिखाई दे रहे और उस के भी बगल मे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो कि खेल रहे है और टहल रहे हैं।

इसपे चंद्र शेखर आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी.आर आंबेडकर जेसे लोगों की फोटो है।

यह तस्वीर एक घर का है और इस घर मे दो मंजीला घर है और ऊपर मे एक बड़ा-सा बना हुआ है जो कि लाल कलर का है।

इसमें एक जग एक प्लास्टिक का बर्तन एक ग्लास और उस बड़े से थाली में चावल और चिकन रखा है और यहां एक ग्लास में सब्जी भी रखी है।

इस तस्वीर मे एक बड़ा-सा घर दिखाई दे रहा है और उस घर के बाहर एक छोटा-सा फील्ड भी दिखाई दे रहा है।